वो टी शर्ट और जींस पहना हुआ है।

एक गैस सिलेंडर भी है।

और हर कोई अपने अपने मेट पर--

और एक आदमी भी है।

मैं देख पा रही हूं कि ये एक बहुत बड़ा दुकान है।